और लेंटर पर दो तीन लाइटे लगी हुई है।

इसमें कुछ पिक्चर्स साफ नजर नहीं आ रही ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर हैं।

लोहे के सामान भी दिखाई दे--

एक नेचुरल एयर स्टॉप है जिसमें पीले रंग की सफेद--